के सामान की दुकान है।

कुछ मछलियाँ डाली हुईं हैं वो दिखाई दे रहीं हैं फर्श दिखाई दे रहा है।

कुछ लोग दिखाई दे रहें हैं आसमान दिखाई दे रहा है।

ग्राउंड के बीच में एक बैनर दिखाई दे रहा है लगा हुआ --

एंटीने दिखाई दे रहें हैं तीन।

कुर्सियाँ दिखाई दे रही है ऑरेंज रंग की लाइटिंग दिखाई दे रही हैं ।

और एक आदमी दिखाई दे रहा है और एक काउंटर दिखाई दे रहा है।